यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा हैं इसके दीवार का कलर व्हाइट हैं उसमे लाइट भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर आश्मान भी दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ गेट भी दिखाई दे रहे हैं कांच भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।